वहां पे डंबल्स लुक भी दिखाई दे रहे हैं मुझे।

कद माउंटेंस लोग भी दिखाई दे रहा है और इसका ये समुद्र का कलर रंग बहोत अच्छा है।

मसाज का है शायद से मसाज करने का आद आदमी लोग का हैंकी लोग बहुत सारा रखा हुआ है और ऑयल मसाज लोग भी है।

रेस्टोरेंट है अपना पंजाब के लेफ्ट राइट दोनों में भी।

और ये सब अंगूर लोग बहुत टेस्टी होता है और यह सच है ठीक ठाक मीडियम साइज का इससे बड़े भी मिलता हैं लेकिन--

नागालैंड जूलॉजिकल पार्क है ये और राइट में ही शायद से आइसक्रीम वाला दिख रहा है मुझे।